हां मौसम बहोत ख़राब लग रहा है यहाँ से बहोत अं गाड़ियाँ आ जा रही है।

यहां पर तरह तरह की मिठाइयां चॉकलेफ मिलती हैं।

तालाब है जहां पर कमल के फूल भी खिले हुए हैं और अ--